फैक्ट्री ही है। फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगाई हुयी हैं। यह मशीन --

यहाँ पर के_अन के_जी_अन सहाजन सेवा केन्दर बनाये --

बच्चे नहाते हुए नज़र आ रहे ऐं ।

रखे हुए हैं। ये केड़े पानी के अंदर मिलते हैं। यह बेचने के लिए --

यह बाहर इस रोड के किनारे खड़े होकर दूसरे रोड को दर्शा रहे है।

वर्कर काम वर्कर है। इन्होने वाइट रंग के कपड़े पहेने रखे हैं। इनका मुखिया बीच में बैठा है।

यहाँ पर एक व्यक्ति बाहर खड़ा होकर फोटो क्लिक करवा रहा है। यह एक --

बच्चे दूर-दूर बैठा रखे हैं। यह सभी सुबह के समय की फोटो है। ये सभी पंडित हैं।

पार्क बोहोत बड़ा है। यहाँ पर खेलने के लिए सुबह शाम बच्चे आते रहते हैं। बड़े बूढ़े घूमते है।